इसमें बसे दिख रही हैं इन बसो का जो कलर है वो येलो रेड ग्रीन एंड ब्लैक कलर की है।

यह कटिंग की दुकान है इस कटिंग की दुकान पर जो कलर पुता हुआ है वो व्हाइट कलर है इसके अंदर कुछ कुर्सियां दिख रही है।

इसमें जो मकान दिख रहा है उस मकान जो कलर है वो ग्रीन एंड वाइट् और ब्लू कलर पूता है।

इसमें बस दिख रही है जो सिल्वर एंड ब्लैक कलर की है इसके आसपास कुछ गाड़ियां भी दिख रही है जो ब्लैक कलर की है और कुछ लोग भी दिख रहे हैं |

इस मंदिर की जो रैलिंग है वह सिल्वर कलर की है इस मंदिर के आस-पास कुछ पेड़ भी है जो ग्रीन एंड ब्लैक कलर की है।